यहाँ पर एक ठेला है यहाँ पे एक ठेला हैऔर ठेला पे ठेला पे के नीचे घास ही है।

यहाँ पे जिम कर रहें हैं यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सर्विस दिया जा रहा है।